बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है सड़क है बैंक कि बिल्डिंग है।

यह एक बुक शॉप है। यहाँ पर लोग कई तरह की किताबें एवं पुस्तके खरीद सक। यहाँ पर कॉपियाँ रजिस्टर एवं स्टेशनरी भी उपलब्ध होती --

कुछ नाई की दुकानें हेयर स्टाइल हेयर कर्लिंग हाइलाइट्स जैसी सेवाएं भी प्रदान करती --

और फेशियल हेयर स्टाइलिंग हेयर कोलौरिंग हेड मसाज जैसी सेवाए भी ले --

नदी के घाट पर कई दुकाने और लोग दिखाई दे रहे हैं।

पुल के ऊपर कई गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और कुछ लोग भी हैं नदी मे कई नाव भी तैर रही हैं।

यहाँ एक कैनरा बैंक का ए.टी.एम. है। यहाँ पर लोग अपने अकाउंट मे पैसे डलवा सकते हैं। पैसे निकलवा सकते हैं।

यह एक पुल है पुल के ऊपर से कई गाड़ियाँ जा रही हैं पुल के नीचे एक बहुत ही बड़ी नदी है नदी के घाट पर कई नाव --

यहाँ पर मोटर साइकिल कार भी खड़ी हैं। बस स्टेशन पे बहुत सारी छोटी-छोटी दुकाने --